दोनों भैंस इस गधे की तरफ आ रहा है।

उसके पीछे से एक साइकिल से--

रेड कलर का टी-शर्ट पहने हुए एक लड़का है जो कि इस गधे की तरफ आ रहा है।

इसमें दो बालक हैं बैठे हुए।

तो टेबल पे एक बोतल रखा हुआ है।

इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे लोग चेयर पर बैठे हुए हैं।

ये तस्वीर रात के समय लिया गया है।

और ये किसी रेस्टोरेंट का तस्वीर है।

फोचका लगाकर लाइट लगाकर --

हंगामा वाटर पार्क का लग रहा है।

एक बहुत ही छोटा बच्चा है।

जो कि एक दो फुट का होगा।

और इस लाइब्रेरी में कोई नहीं बैठा हुआ है।

जैसे तैसे सब बिखरा हुआ है।

एक महिला है जो कि इस कैमरे के तरफ आ रही है।

इस सेल्फी में बहुत सारे लोग आ गए हैं।

जिसमें से मेन सब्जेक्ट है यह ब्लू कलर वाला।

रात के समय लिया गया है।

इसमें कुछ सामान रखा गया है साइड में।

एक आदमी है जो कि वाइट कलर का स्वेटर पहने हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे चेयर हैं।

सभी चेयर पे वाइट कलर का कपड़ा डाला हुआ है।

एक गाड़ी पीछे की तरफ है।

उसके पीछे बड़ा सा पाइप है।

थोड़ा बहुत ब्लू कलर का भी है।

इस फोटो में बड़ा सा एक --

और एक आदमी है जो कि साइकल से --

उसके बगल में एक --

इस तस्वीर में एक लड़का खड़ा है।

ब्लू और वाइट कलर का शर्ट पहने हुए है।

रोड के किंदारे का है।

इस तस्वीर में दो लोग खड़े हैं।

और एक कार को बना रहे हैं खोलकर।

इस तस्वीर में बहुत सारे फल हैं।

जो कि एक आदमी से बात कर रहा है सब।

और सामने में एक टीचर है।

और सजावट किया गया है।

यह तस्वीर में एक घर है।

एक लड़की जा रही है।

अच्छे-अच्छे चीज बना रहे हैं।

यह तस्वीर रात के समय लिया गया है।

बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं।

कुछ लोग फूल का माला बेच रहे हैं।

यह तस्वीर किसी घर का है।

और चार पंखा लगा हुआ है ऊपर में।

उसके पीछे दो बैनर लगा हुआ है।

हरा भरा और नारियल का भी पेड़ है तीन।

जो कि ब्लैक चश्मा लगा के खड़ा है।

और उनके फेस पे अस्माइल नहीं पता चल रहा है।

इसे अच्छे से सजाया गया है।

इस तस्वीर में बहुत सारी बाइक दिख रही हैं।

सात लोग हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं।

उस पे सीढ़ी लगाया गया है।

जहां पे जानवर है उसके ऊपर करकट है।

इसमें सामने में एक पेट्रोल पंप है।

जिसके ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

ज्यादातर छोटे-छोटे बच्चे के कपड़े दिख रहे हैं दो महिला हैं एक महिला के हाथ में कुछ समान है।

और कढ़ाही के ऊपर रखा गया है।

यह तस्वीर एक पार्क का है।

और इस पार्क में बहुत सारे हरे भरे छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं।

उसके नीचे दो कार और बहुत सारी बाइक --

यह फोटो किसी --

यह तस्वीर शाम के समय लिया गया है।

और कुछ लोग हैं जो कि खरीद रहे हैं।

और इसमें सामने से एक आदमी आ रहा है।

एक घर है जो कि येलो कलर का है।

सभी चेयर येलो कलर का है।

ये तस्वीर किसी मॉल का है।

और सामने में एक पानी टंकी दिख रहा है।

इसमें एक आदमी है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है।

यह तस्वीर किसी छत पर से ली गई है।

और नीचे में बहुत सारी गाड़ी है।

इस तस्वीर में सामने से एक आदमी आ रहा है।

इस तस्वीर में सामने में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

यह तस्वीर एक पहाड़ का है।

और यह पहाड़ काला और भूरा दिख रहा है।

इसमें बहुत सारी गाड़ियां पार की गई हैं।

किया महिंद्रा का शोरूम है।

बहुत सारे पंखा लगा हुआ है।

यह तस्वीर किसी पार्क का है।

अपना टाइम आएगा वाला टी-शर्ट पहने हुए हैं।

सभी बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं।

यह तस्वीर किसी किराने दुकान का है।

और इस पर मां भवानी डेरी फार्म लिखा हुआ है।